यह एक रूम है जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाता --

यहाँ कपड़े भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक कपड़ा दुकान है जिसका नाम है सुरेश कपड़ा --

यहाँ मिर्ची है हरी-भरी बहुत सारी मिर्ची है और--